यह फोटो एक आदमी की फोटो है जोकि एक--

जिसके सामने से एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसमें वीवो के बहुत सारी फोन को डिस्प्ले में लगाए गए हैं।

और उसके बाहार बहोत सारी गाड़ियां भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक रेलवे स्टेशन का फोटो है।

जिसके सामने एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है और एक आ--

जिसमें आउटसाइड एरिया वाला टेबल चेयर दिखाया गया है।